क्योंकि यहां छोटे बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर सभी कलर के सभी अलग अलग प्रकार के कलर के फूल हैं।

यहां एक सोलर प्लांट है जिससे लाइट की ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है।

यह एक गाड़ी शोरूम है जहां गाड़ी को वॉश किया जाता है।

यहां सभी सामान बहुत ही अच्छा और नया दिखाई दे रहा--

जिस प्रकार से इसके गेट को सजाया गया है और इसके गेट पर कुछ चक्र जैसी--

यहां की प्राकृतिक सुंदरता मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही--

इनको देख कर हमें पुराने सिक्कों के बारे में पता चलता है कि पुरानी चीजें कैसी होती हैं।

जो की यहां पर मुझे लगता है की बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यह जगह है।

यह मार्केट लोगों के लिए बहोत ही ज्यादा उपयोगी होता है।

यहां पर एक बहोत ही पुराना ऐतिहासिक महल है जो की बहोत पुराना और बहोत ही पुराना दिखाई दे रहा है।

दुकान है जहां पर सभी प्रकार के बैग बेचे जाते हैं छोटे बड़े और नए पुराने--

यहां पर एक छोटा सा टोल नाका दिखाया गया है जहां पर गाड़ियों को टैक्स भरना पड़ता है।

इससे लोगों के लिए नई सड़कें बनाई जाती है और लोग सड़कों पे आसानी--

यहां पर एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जहां पर सभी प्रकार का पेट्रोल डीजल भरा जाता है।